यह तस्वीर एक प्राचीन खंडहर नुमा इमारत के आंतरिक भाग को दर्शाती है।

बस के नीचे बी_आर इलेवन और पी_सी एट वन सिक्स फाइव लिखा हुआ है।

सड़क धुल भरी है और दोनों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरी हुई है।

टूर में पहाड़ियां दिख रही है जिन पर हरी भरी वनस्पति हैं।

छवि में आकाश ट्रांसफॉमर्स नामक एक कंपनी के परिसर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है।

गेट के ऊपर कंपनी का नाम और पता लिखा हुआ है।

गेट के नीचे फाइनेंसड बाई लिखा है।

छवि मैं एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक सुन्दर रंग बिरंगे फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर विभिन्न विषयों के चार्ट और पोस्टर लगे हुए हैं।

बाड़ा जालीदार है और हरे रंग का है।

मछली घर के नीचे और किनारो पर एल_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

जिम में एक दर्पण भी लगा हुआ है।

कपड़े अलग अलग रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है।

दुकान में एक पानी का कूलर भी रखा हुआ है।